इस चित्र में सामने बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे के सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में एक होटल का रिसेप्शन एरिया नजर आ रहा है।

पौधों में पानी देता नज़र आ रहा है।

जिसमें कुछ चेयर्स भी रखीं गयी है।

दूसरी ओर सड़क में एक बड़ा सा बिजली का खंभा और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

पार्क के दूसरी तरफ बड़े बड़े घर और कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बहोत सुंदर सी नदी नजर आ रही है जिसमें बहोत सारी बत्तखे तैरती हुई नजर आ रही हैं।

और कुछ कपड़े ल रखे गए हैं दूसरी ओर कुछ टी शर्ट्स नजर आ रही हैं।

इस चित्र में एक छोटे से ढाबे के अंदर एक व्यक्ति काम करता नजर आ रहा है।

नदी के उस पार बोहोत बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है।

बहुत अलग-अलग तरह के प्लांट्स रखे गए हैं।

लगे हुए दिख रहे हैं और कुछ सीढ़ियां है।

नदी की दूसरी ओर एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है।

सामने छोटी बच्चिया हाथ जोड़े खड़ी दिख रही है।

दूसरी तरफ कुछ पत्थरों की चट्टानें नजर आ रही है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही हैं।

बिल्डिंग के दूसरी तरफ एक दुकान की बंद शटर नजर आ रही है।

कुछ लकड़ी की अलमीरा और एक शीशा नजर आ रहा है।